मुझे इस फोटो मे एक आदमी खड़ा दिखाई दे रहा है।

मुझे इस फोटो में एक ऑटो दिखाई दे रही है।

मुझे इस फोटो में कुछ चेयर्स दिख रही हैं।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

इस फोटो में एक बोर्ड दिख रहा है। मुझे इस फोटो में एक टेबल --

प्रार्थना में खड़े दिख रहे हैं मुझे इस फोटो में कुछ टीचर्स दिख रहे हैं।

मुझे इस फोटो में एक लड़की सेल्फी लेती हुई दिख रही हैं।

एक ट्रेन खड़ी हुई दिख रही है मुझे इस--

मुझे इस फोटो में एक खिड़की दिख रही है।

तीन काल दिख रहे हैं इस फोटो में बहुत व्यक्ति खड़े हुए दिख रहे हैं।

इस फोटो में मुझे एक धर्म काटा नाम का घर--

कुछ सामान रखे हुए दिख रहे हैं।

इस फोटो में मुझे एक प्रेटोल पंप दिख रहा है।

दो पेड़ दिख रहें हैं इस फोटो में मुझे--

इस फोटो में मुझे तीन चेयर रखी हुई दिख रही है इस--

आई फोन वीवो ओप्पो के फोन दिख रहे हैं इस--

मुझे इस फोटो में दो कार दिख रही है।

मुझे इस फोटो मे एक रोड दिख रही है।

मुझे इस फोटो में दो कार दिख रही है।